ये एक पेट्रोल पर्प हैं| यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं| रात का समय है काफी सारी लाइटे लगी हुई हैं।

ये कोई दुकान है। यहाँ पर बोहोत अच्छा लोहा है। काफी सारे लोहे हैं। यहाँ पर एक अंकल खड़े हुए है। वो कुछ बना रहे हैं।

ये दो लोग है। एक अंकल नीचे है। एक अंकल ऊपर है। यहाँ पे बहुत अच्छा है।

और यहाँ पर रेड कलर की झंडी है| आसमान है काफी बड़ी नाव है| काफी लोग बैठे है उस नाव में --